बीच में एक रेड कलर का टेबल भी रखा हु--

यह एक ऑफिस का व्यू है।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

और एक अलमीरा रखी हुई है।

यह एक गैराज का व्यू है।

साइड मे एक शोकेस बना हुआ है जिसमें लाइट --

बस अड्डे का व्यूह हैं जिसमें दो बस दिखाई दे रही हैं।

ग्रीन कलर का मैट भी नजर आ रहा है।

जिसमें पीछे की तरफ कोई एक--

साइडों में काफी पेड़ पौधे भी नजर आ रहे हैं।

सीढी नुमा आकृति बनी हुई है।

और कुछ पौधे भी आ रहें हैं।

जिसमें काफी तरह के रंग बिरंगे खिलौने रखे हुए हैं।

गोदाम है जिसके बाहर व्हाइट कलर की लंबी लंबी बोरीनुमा कुछ रखा हुआ है।

रेस्टोरेंट का व्यू है जिसके ऊपर ग्रिल लगी हुई है और सट डाले हुए है कुछ --

यहां पर कुछ लोग नजर आ रहे हैं।

यह एक क्लीनिक लग रहा है।